त्रे एक अअअअअ में एक आदमी बैठा हुआ है और इससे बोहत सारे लोग बात कर रहे है पीछे खिड़की में हरे रंग का पर्दा लगा हुआ हैं।

ये चित्र एक कार मेकैनिक कैश शॉप की है और यहाँ पर एक कार खड़ी हुई है इसका इंजन खुला हुआ है और इसका--

ये चित्र एक अअअ मेकेनिक शॉप की दिख रही है और यहाँ पर बाहर एक बाइक इसका रिपेयरमेन्ट चल रहा हैं।

और बाउंड्री बनी हुई है और अ उसके बाजु में एक अ बगल में एक घर है जहाँ पर एक गाड़ी और दो मारुति खड़ी --